ये मकान के जस्ट एक लड़के दो एक लड़के उधर साईकल चला रहे हैं और एक लड़की इधर साईकल चला रही है। यहाँ पे कई सारे लोग हैं। कोई जा रहे है और कोई आ रहे हैं। यहाँ पे एक बोहोत बड़ा पेड़ भी है।

यहाँ पे खिरकी और यहाँ पे खिड़की है जो देखने में बोहत सुंदर लगता है और यहाँ पे दो मछली है दो-तीन मछली लगता है अंदर आने वाली --